यहाँ एक बड़ी सी नदी है जहाँ पे बोट्स है। बोट् पे लोग भड़े पड़े है कुछ चिड़िये उड़ रही है उस नदी के और नदी में बहाव भी है तीन बोट है और कुछ लोग एक आदमी बोट चला रहा है और कुछ लोग बैठ कर बा --

यह एक बिल्डिंग है जिसके बाहर फुवारे लगे हुऐ है कुछ बाइके खड़ी हुई है एक आदमी खड़ा है जिसमे लाइट लगी हुई है बहोत सारे गमले लगे हुऐ ह।

यह यहा पे एक बहुत बड़ा मैदान है और मैदान पूरा एकदम खुला मैदान है जहा पे हरी-हरी घास उगी है एक लाइट लगा हुआ है बहुत पेड़ उगे हुऐ है बिल्डिंग से चारों बगल और लाइटे लगी हुई है।